नीचे भी फर्श पर किताबें रखी हुई हैं।

और बैग रखा हुआ है। छत में एक घड़ी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे लोग इसमें खड़े कांटा भी दिखाई दे रहा है।

ये एक बहोत बड़ा पहाड़ है।

जमीन पर कपड़ा लाल कलर का है।

ब्लैक कलर का गेट एक औरत बाहर आती हुई दिखाई दे रही है।